जो कि लाल कलर की साड़ी पहन रखी है. वह नित्र कला दिखा रहीं है।

पहाड़ का कलर लाल चटान की तरह दिखाई दे रहा है तथा खुला आसमान नीला दिखाई दे --

भवन है किनारे और ठेले भी कुछ लोग लगा रखे हैं वह फल सब्जी बेक रहे हैं।

जो सीधा जा रहा है और दूर में भी कुछ लोग खड़े हैं खिड़कियां हैं।

नाँव के दो का कलर सफेद है तथा तीसरी नांव का कलर --

मेज है मेज का कलर काला है तथा उसके बगल में भी एक मेज है जिसपे पोस्टर पे कुछ रखवाया है।

तीन बच्चे हैं तो दो पुरष हैं और बगल-वगल बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं खुला आसमान है।

इस फोटो में नदी है बीचों-बीच तथा अगल-बगल बड़े-बड़े पेड़ हैं।

तथा उस पहाड़ के पास एक बहुत बड़ा रंग बीरंगा मंदिर है जिस पे लोग आते-जाते नजर आ रहे हैं तथा उसके बगल भी कई भवन हैं |

इस फोटो में एक मूर्ति है मूर्ति को बहुत ही सुन्दर कपड़ों से सजा रखा है मूर्ति का कलर थोड़ा --